ऐसे तमाम लोगों की जाने बचाई गयी हैं स्वास्थ --

और एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड किया जाता है यहां बहुत अच्छी सुविधा है सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुविधाएं दी जाती हैं।

साफ़ साफ़ भी रहती है। लोगों के लिए शीतल जल उपलब्ध रहता है।

ई-रिक्शा स्टोर है। यहां जो है बैटरी चालित ई-रिक्शा उपलब्ध है। इसपे लोग आने-जाने के लिए उपयोग में लाते हैं और पब्लिक के लिए --